आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे --

और यहा पे देखिए बिजली का केबल दिख रहा है कुछ --

बिजली के खम्भे दिख रहे है। केबल दिख रही है। निचे फर्स दिख रही है। थोड़ी घास है पेड़ है आसमान --

और बिल्डिंग की बालकनी दिख रही है और बालकनी में ग्रील लगे हुए हैं।

ए.सी. का फैन भी दिख रहा है यहा पे। बड़ी-बड़ी विंडोज भी दिख रही हैं। गेट भी दिखाई दे रहा है ।

और खिड़कियों से उजाला भी दिख रहा है फ़र्श दिख रहा है।

हेय फ्रेंड्स ये जो इमेज आप लोगो के सामने शेयर किया गया है --

और यहां पे एक बेड दिख रहा है जो चद्दर लगा हुआ है और दो पिलो दिख रही है।

और बड़े-बड़े विंडोज भी बने हुए है।

हेय फ्रेंड्स आप लोग देख सकते है ये ग्राउंड है काफी बड़ा।

पेड़ दीख रहा है जिसमे हरि पत्ति लगी हुई है आसमान दीख रा --

एक-दो लोग मेम्बर दिख रहे हैं काफी वाइट दिख --

यहाँ पे देखिए यहाँ पे अ काफी खुबसूरत अ फूलो का हार बना हुआ हैं और एक --

व्हाइट कलर का फूल का हार दिख रहा है ऑरेंज कलर का और मल्टी कलर भी दिख रहा हैं।

थोड़ी-थोड़ी और फर्श भी दिख रहे है कोष्ठक टाइप में।

और कुछ चीजे यहाँ पे पाउच की दिख रही हैं जो --

ये देखिए यह कपड़ो का शोप है जहा पे लेडिस और जेन्ट्स कपड़े दोनों मिल रहे हैं क्योंकि ये जो स्टेच्यु है वो जेन्ट्स है।

और जाली में बंद हैं और यहां पर लाइट्स वगैरा भी जल रही हैं।

बट यहा कोई मेम्बर नहीं दिख रहे हैं।

वैसे यहां पूरा मुर्गियों का झुंड ही दिखाई दे रहा है।